मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
आज 26 जनवरी है
गणतंत्र पर्व की अनेकअनेक शुभकामनायें
2020 का ये प्रथम मन की बातका मिलन है
इस वर्ष का भी यह पहला कार्यक्रम है इस दशक का भी यह पहला कार्यक्रम है
साथियो इस बार गणतंत्र दिवस समारोह की वजह से आपसे मन की बातउसके समय में परिवर्तन करना उचित लगा
और इसीलिए एक अलग समय तय करके आज आपसे मन की बात कर रहा हूँ
साथियो दिन बदलते हैं हफ्ते बदल जाते हैं महीने भी बदलते हैं साल बदल जाते हैं लेकिन भारत के लोगों का उत्साह और हम भी कुछ कम नहीं हैं हम भी कुछ करके रहेंगे
कैन डीओ ये कैन डीओ का भाव संकल्प बनता हुआ उभर रहा है
देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की भावना हर दिन पहले से अधिक मजबूत होती जाती है
साथियो मन की बात के मंच पर हम सब एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं
नयेनये विषयों पर चर्चा करने के लिए और देशवासियों की नयीनयी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए भारत को सेलिब्रेट करने के लिए
मन की बात शेयरिंग लर्निंग और ग्रोइंग टोगेथर का एक अच्छा और सहज प्लैटफार्म बन गया है
हर महीने हज़ारों की संख्या में लोग अपने सुझाव अपने प्रयास अपने अनुभव शेयर करते हैं
उनमें से समाज को प्रेरणा मिले ऐसी कुछ बातों लोगों के असाधारण प्रयासों पर हमें चर्चा करने का अवसर मिलता है
किसी ने करके दिखाया हैतो क्या हम भी कर सकते हैंक्या उस प्रयोग को पूरे देशभर में दोहराकर एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैंक्या उसको समाज के एक सहज आदत के रूप में विकसित कर उस परिवर्तन को स्थायी कर सकते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब खोजतेखोजते हर महीने मन की बात में कुछ अपील कुछ आह्वाहन कुछ कर दिखाने के संकल्पों का सिलसिला चल पड़ता है
पिछले कई सालो में हमने कई छोटेछोटे संकल्प लिये होंगे
जैसे नो टो सिंगल उसे plasticखादी और लोकल खरीदनेकी बात हो स्वच्छता की बात हो बेटियों का सम्मान और गर्व की चर्चा होless कैशेकोनॉमी का ये नया पहलू उसको बल देना हो
ऐसे ढ़ेर सारे संकल्पों का जन्म हमारी इन हल्कीफुल्की मन की बातों से हुआ है
औरउसे बल भी आप ही लोगों ने दिया है
मुझे एक बहुत ही प्यारा पत्र मिला है
बिहार के श्रीमान शैलेश का
वैसे तो अभी वो बिहार में नहीं रहते हैं
उन्होंने बताया है कि वो दिल्ली में रहकर किसी एनजीओ में काम करते हैं
श्रीमान शैलेश जी लिखते हैंमोदी जी आप हर मन की बात में कुछ अपील करते हैं
मैंने उनमें से कई चीजों को किया है
इन सर्दियों में मैंने लोगो के घरों में से कपड़े इकट्ठे कर जरुरतमंदो को बाँटे है
मैंने मन की बात से लेकर कई चीजों को करना शुरू किया
लेकिन फिर धीरेधीरे कुछ मैं भूल गया और कुछ चीजें छूट गयी मैंने इस नए साल पर एक मन की बात पर चार्टर बनाया है जिसमें इन सभी चीजों की एक लिस्ट बना डाली है
जैसे लोग नए साल पर न्यू यियर रिजोल्यूशंस बनाते हैं
मोदी जी यह मेरे नए साल का सोशल रिजोल्यूशन है
मुझे लगता है कि यह सब छोटी छोटी चीजें है लेकिन बड़ा बदलाव ला सकती हैं
क्या आप इस चार्टर पर अपने ऑटोग्राफ देकर मुझे वापस भेज सकते हैंशैलेश जी आपको बहुतबहुत अभिनन्दन और शुभकामनाएं
आपके नए साल के रिजोल्यूशन के लिए मन की बात चार्टर ये बहुत ही इनोवेटिव है
मैं अपनी ओर से शुभकामनायें लिखकर इसे जरुर आपको वापस भेजूंगा
साथियो इस मन की बात चार्टर को जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी बाते हैंइतने सारे हैशटैग्स हैंऔर हम सबने मिलकर ढ़ेर सारे प्रयास भी किए हैं
कभी हमने सन्देशटूसोल्जर्स के साथ अपने जवानों से भावात्मक रूप से और मजबूती से जुड़ने का अभियान चलायाखादी फोर नेशन खादी फोर Fashionके साथ खादी की बिक्री को नए मुकाम पर पहुंचाया
बाय localका मन्त्र अपनाया
हम फिट तो इंडिया फिट से फिटनेस के प्रति जागरूकताबढ़ाई
माय क्लीन इंडियाया स्टेच्यू Cleaningके प्रयासों से स्वच्छता को मस्स मूवमेंट बनाया
हैशटैग नोटूड्रग्स NoToDrugsहैशटैगभारत की लक्ष्मीBharatKiLakshami हैशटैग सेल्फफॉरसोसाइटी Self4SocietyहैशटैगStressFreeExamStressFreeExamsहैशटैगसुरक्षा बन्धनSurakshaBandhan हैशटैग डिजिटल EconomyDigitalEconomyहैशटैग रोड SafetyRoadSafetyओ हो हो अनगिनत हैं
शैलेश जी आपके इस मन की बातके चार्टर को देखकर एहसास हुआ यह लिस्ट वाकई बहुत लम्बी है
आइये इस यात्रा को कंटीन्यू करें
इस मन की बात चार्टर में से अपनी रूचि के किसी भी काउज से जुड़ें
हैशटैग उसे करके सबके साथ गर्व से अपने कंट्रीब्यूशन को शेयर करें
दोस्तों को परिवार को और सभी को मोटीवेट करें
जब हर भारतवासी एक कदम चलता है तो हमारा भारत वर्ष 130 करोड़ कदम आगे बढ़ाता है
इसीलिएचरैवेतिचरैवेतिचरैवेति चलते रहोचलते रहोचलते रहो का मन्त्र लिए अपने प्रयास करते रहें l
मेरे प्यारे देशवासियो
हमने मन की बात चार्टर के बारे में बात की
स्वच्छता के बाद जनभागीदारी की भावनाparticipative spiritआज एक और क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है और वह है जल संरक्षण
जल संरक्षणके लिए कई व्यापक और इनोवेटिव प्रयास देश के हर कोने में चल रहे हैं
मुझे यह कहते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि पिछले मानसून के समय शुरू किया गया ये जलशक्ति अभियान जनभागीदारी से अत्यधिक सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है
बड़ी संख्या में तालाबों पोखरों आदि का निर्माण किया गया
सबसे बड़ी बात ये है कि इस अभियान में समाज के हर तबके के लोगों ने अपना योगदान दिया
अब राजस्थान के झालोर जिले को ही देख लीजिये यहां की दो ऐतिहासिक बावड़िया कूड़े औरगन्दे पानीका भण्डार बन गयी थी
फिर क्या था भद्रायुं और थानवाला पंचायत के सैकड़ों लोगों ने जलशक्ति अभियान के तहत इन्हें पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया
बारिश से पहले ही वे लोग इन बावड़ियों में जमे हुए गंदे पानी कूड़े और कीचड़ को साफ करने में जुट गये
इस अभियान के लिए किसी ने श्रमदान किया तो किसी ने धन का दान
और इसी का परिणाम है कि ये बावड़ियां आज वहां की जीवन रेखा बन गई है
कुछ ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की
यहां 43 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली सराही झील अपनी अंतिम सांसे गिन रही थी लेकिन ग्रामीणों ने अपनी संकल्प शक्ति से इसमें नई जान डाल दी
इतने बड़े मिशन के रास्ते में इन्होंने किसी भी कमी को आड़े नहीं आने दिया
एककेबाद एक कई गाँव आपस में जुड़ते चले गए
इन्होंने झील के चारों ओर एक मीटर ऊँचा तटबन्ध बना डाला
अब झील पानी से लबालब है और आसपास का वातावरण पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है
उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा हल्द्वानी हाइवे से सटे सुनियाकोट गाँव से भी जनभागीदारी का एक ऐसा ही उदाहरण सामने आया है आई गाँव वालों ने जल संकट से निपटने के लिए खुद ही गाँव तक पानी लाने का संकल्प लिया आई फिर क्या था लोगों ने आपस में पैसे इकट्ठे किये योजना बनी श्रमदान हुआ और करीब एक किलोमीटर दूर से गाँव तक पाईप बिछाई गई
पंपिंग स्टेशन लगाया गया और फिर देखते ही देखते दो दशक पुरानी समस्या हमेशाहमेशा के लिये खत्म हो गई आई वहीं तमिलनाडु से borewellको रेनवाटर हार्वेस्टिंग काजरिया बनाने का बहुत ही इनोवेटिव आईडीईए सामने आया है आई देशभर में जलसंरक्षणसे जुड़ी ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो न्यू इंडिया के संकल्पों को बल दे रही हैं आई आज हमारे जलशक्ति चैम्पियंस की कहानियाँ सुनने को पूरा देश उत्सुक है आई मेरा आपसे अनुरोध है कि जलसंचय और जलसंरक्षण पर किये गये अपने स्वयं के या अपने आसपास हो रहे प्रयासों की कहानियाँ फोटो एवं Videojalshakti4India उस पर ज़रूर शेयर करें आई
मेरे प्यारे देशवासियों और खासकर के मेरे युवा साथियों

कुछ ऐसी ही गर्व से भर देने वाली कहानी तमिलनाडु के योगानंथन की है
वह खुद तो तमिलनाडु में बीड़ी बनाने का कार्य करते है लेकिन उनकी बेटी पुर्णाश्री ने वेट लिफ्टिंग का गोल्ड मेडल हासिल कर हर किसी का दिल जीत लिया
जब मैं डेविड बेकहैम का नाम लूँगा तो आप कहेंगे मशहूर इंटरनेशनल फुटबॉलर
लेकिन अब अपने पास भी एक डेविड बेकहैम है और उसने गुवाहाटी के यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है
वो भी साइक्लिंग स्पर्धा के 200 मीटर के स्प्रिंट इवेंट में
मैं जब अंडमाननिकोबार गया थाकार निकोबार द्वीप के रहने वाले डेविड के सिर से बचपन में ही मातापिता का साया उठ गया था
चाचा उन्हें फुटबॉलर बनाना चाहते थे तो मशहूर फुटबॉलर के नाम पर उनका नाम रख दिया
लेकिन इनका मन तो साइक्लिंग में रमा हुआ था
खेलो इंडिया स्कीम के तहत इनका चयन भी हो गया और आज देखिए इन्होंने साइक्लिंग में एक नया कीर्तिमान रच डाला
भिवानी के प्रशांत सिंह कन्हैया ने पोले वॉल्ट इवेंट में खुद अपना ही नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है
19 साल के प्रशांत एक किसान परिवार से हैं
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रशांत मिट्टी में पोले वॉल्ट की प्रैक्टिस करते थे
यह जानने के बाद खेल विभाग ने उनके कोच को दिल्ली के जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम में एकेडमी चलाने में मदद की और आज प्रशांत वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं
मुंबई की करीना शान्क्ता की कहानी में किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानने का एक जज्बा हर किसी को प्रेरित करता है
करीना ने स्विमिंग में 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक स्पर्धा की Under17 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया
10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली करीना के लिए एक समय ऐसा भी आया जबknee इंजुरी के चलते हुए ट्रेनिंग छोड़नी पड़ी थी लेकिन करीना और उनकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी और आज परिणाम हम सब के सामने है
मैं सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ
इसके साथ ही मैं सभी देशवासियों की तरफ़ से इन सबके पेरेंट्स को भी नमन करता हूँ जिन्होंने गरीबी को बच्चों के भविष्य का रोड़ा नहीं बनने दिया
हम सभी जानतेहैं कि राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के माध्यम से जहाँ खिलाड़ियों को अपना पैशन दिखाने का मौका मिलता है वहीँ वे दूसरे राज्यों की संस्कृति से भी रूबरू होते हैं
इसलिए हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर ही हर वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी आयोजित करने का निर्णय लिया है
अगले महीने 22 फरवरी से 1 मार्च तक ओडिशा के कटक और भुवनेश्वर में पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित हो रहे हैं
इसमें भागीदारी के लिए 3000 से ज्यादा खिलाड़ी क्वालिफाई कर चुके हैं
मेरे प्यारे देशवासियो
एक्साम का सीजन आ चुका है तो जाहिर है सभी विद्यार्थी अपनीअपनी तैयारियों का आखिरी शेप देने में जुटे होंगे
देश के करोड़ो विद्यार्थी साथियों के साथ परीक्षा पे चर्चा के अनुभव के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि देश का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है और हर चुनौती के लिए तैयार है
एक ओर परीक्षाएँ और दूसरी ओर सर्दी का मौसम
इस दोनों के बीच मेरा आग्रह है कि खुद को फिट जरूर रखें
थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करें थोड़ा खेलें कूदें
खेलकूद फिट रहने का मूल मंत्र है
वैसे मैं इन दिनों देखता हूँ कि फिट इंडिया को लेकर कई सारे इवेंट्स होते हैं
18 जनवरी को युवाओं नेदेशभर में cyclothonका आयोजन किया
जिसमें शामिल लाखों देशवासियों ने फिटनेस का संदेश दिया
हमारा न्यू इंडिया पूरी तरह से फिट रहे इसके लिए हर स्तर पर जो प्रयास देखने को मिल रहे हैं वे जोश और उत्साह से भर देने वाले हैं
पिछले साल नवम्बर में शुरू हुई फिट इंडिया स्कूल की मुहीम भी अब रंग ला रही है
मुझे बताया गया है कि अब तक 65000 से ज्यादा स्कूलों ने ओनलाइन रजिस्ट्रेशन करके फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट प्राप्त किया है
देश के बाकी सभी स्कूलों से भी मेरा आग्रह है कि वे फिजिकल एक्टिविटी और खेलों को पढ़ाई के साथ जोड़कर फिट स्कूल ज़रूर बनें
इसके साथ ही मैं सभी देशवासियों से यह अपील करता हूँ वह अपनी दिनचर्या में फिजिकल एक्टिविटी को अधिक से अधिक बढ़ावा दें
रोज़ अपने आप को याद दिलाएँ हम फिट तो इंडिया फिट
मेरे प्यारे देशवासियों
दो सप्ताह पहले भारत के अलग अलग हिस्सों में अलगअलग त्योहारों की धूम थी
जब पंजाब में लोहड़ी जोश और उत्साह की गर्माहट फ़ैला रही थीं
तमिलनाडु की बहनें और भाई पोंगल का त्योहार मना रहे थे तिरुवल्लुवर की जयंती celebrateकर रहे थे
असम में बिहू की मनोहारी छटा देखने को मिल रही थी गुजरात में हर तरफ उत्तरायण की धूम और पतंगों से भरा आसमान था
ऐसे समय में दिल्ली एक ऐतिहासिक घटना की गवाह बन रही थी
दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किये गए
इसके साथ ही लगभग 25 वर्ष पुरानी ब्रूरियांग ब्रूरेआंग्रेफ्यूजी crisisएक दर्दनाक चैप्टर का अंत हुआ हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गयी
अपने बसी routineऔर फेस्टिव सीजन के चलते आप शायद इस ऐतिहासिक समझौते के बारे में विस्तार से नहीं जान पाए हों इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में मन की बात में आप से अवश्य चर्चा करूँ
ये समस्या 90 के दशक की है
1997 में जातीय तनाव के कारण BruReangजनजाति के लोगों को मिज़ोरम से निकल करके त्रिपुरा में शरण लेनी पड़ी थी
इन शरणार्थियों कोNorth त्रिपुरा के कंचनपुर स्थित अस्थाई कैम्पों में रखा गया
यह बहुत पीड़ा दायक है किBruReangसमुदाय के लोगों ने शरणार्थी के रूप में अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया
उनके लिए कैम्पों में जीवन काटने का मतलब था हर बुनियादी सुविधा से वंचित होना
23 साल तक न घर न ज़मीन न परिवार के लिए बीमारियों के लिए इलाज़ का प्रबंध और ना बच्चों के शिक्षा की चिंता या उनके लिए सुविधा
ज़रा सोचिए 23 साल तक कैम्पों में कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करना उनके लिए कितना दुष्कर रहा होगा
जीवन के हर पल हर दिन का एक अनिश्चित भविष्य के साथ बढ़ना कितना कष्टप्रद रहा होगा
सरकारें आईं और चली गईं लेकिन इनकी पीड़ा का हल नहीं निकल पाया
लेकिन इतने कष्ट के बावज़ूद भारतीय संविधान और संस्कृति के प्रति उनका विश्वास अडिग बना रहा
और इसी विश्वास का नतीज़ा है कि उनके जीवन में आज एक नया सवेरा आया है
समझौते के तहत अब उनके लिए गरिमापूर्ण जीवन जीने का रास्ता खुल गया है
आखिरकार 2020 का नया दशक ब्रूरेंग समुदाय के जीवन में एक नई आशा और उम्मीद की किरण लेकर आया
करीब 34000 ब्रूशरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा
इतना ही नहीं उनके पुनर्वास और सर्वांगीणविकास के लिए केंद्र सरकार लगभग 600 करोड़ रूपए की मदद भी करेगी
प्रत्येक विस्थापित परिवार कोplot दिया जाएगा
घर बनाने में उनकी मदद की जाएगी
इसके साथ ही उनके राशन का प्रबंध भी किया जाएगा
वे अब केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे
ये समझौता कई वजहों से बहुत ख़ास है
ये कोआपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को दर्शाता है
समझौते के लिए मिज़ोरम और त्रिपुरा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मौज़ूद थे
ये समझौता दोनों राज्यों की जनता की सहमति और शुभकामनाओं से ही सम्भव हुआ है
इसके लिए मैं दोनों राज्यों की जनता का वहाँ के मुख्यमंत्रियों का विशेषरूप से आभार जताना चाहता हूँ
ये समझौता भारतीय संस्कृति में समाहित करुणाभाव और सहृदयता को भी प्रकट करता है
सभी को अपना मानकर चलना और एकजुटता के साथ रहना इस पवित्रभूमि के संस्कारों में रचा बसा है
एक बार फिर इन राज्यों के निवासियों और ब्रूरेंग समुदाय के लोगों को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियों
इतने बड़े खेलोइंडिया गेम्स का सफल आयोजन करने वाले असम में एक और बड़ा काम हुआ है
आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले असम में आठ अलगअलग मिलिटेंट ग्रुप के 644 लोगों ने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया
जो पहले हिंसा के रास्ते पर चले गए थे उन्होंने अपना विश्वास शान्ति में जताया और देश के विकास में भागीदार बनने का निर्णय लिया है मुख्यधारा में वापस आए हैं
पिछले वर्ष त्रिपुरा में भी 80 से अधिक लोग हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में लौट आए हैं
जिन्होंने यह सोचकर हथियार उठा लिए थे कि हिंसा से समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है उनका यह विश्वास दृढ़ हुआ है कि शांति और एकजुटता ही किसी भी विवाद को सुलझाने का एकमात्र रास्ता है
देशवासियों को यह जानकर बहुत प्रसन्ता होगी कि नॉर्थईस्ट में इंसर्जेंसी बहुतएक मात्रा में कम हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस क्षेत्र से जुड़े हर एक मुद्दे को शांति के साथ ईमानदारी से चर्चा करके सुलझाया जा रहा है
देश के किसी भी कोने में अब भी हिंसा और हथियार के बल पर समस्याओं का समाधान खोज रहे लोगों से आज इस गणतंत्रदिवस के पवित्र अवसर पर अपील करता हूँ कि वे वापस लौट आएं
मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में अपनी और इस देश की क्षमताओं पर भरोसा रखें
हम इक्कीसवीं सदी में हैं जो ज्ञानविज्ञान और लोकतंत्र का युग है
क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ हिंसा से जीवन बेहतर हुआ हो क्या आपने ऐसी किसी जगह के बारे में सुना है जहाँ शांति और सद्भाव जीवन के लिए मुसीबत बने हों हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं करती
दुनिया की किसी भी समस्या का हल कोई दूसरी समस्या पैदा करने से नहीं बल्कि अधिकसेअधिक समाधान ढूँढकर ही हो सकता है
आइये हम सब मिल करएक ऐसे नए भारत के निर्माण में जुट जाएँ जहाँ शांति हर सवाल के जवाब का आधार हो
एकजुटता हर समस्या के समाधान के प्रयास में हो
और भाईचारा हर विभाजन और बंटवारे की कोशिश को नाकाम करे
मेरे प्यारे देशवासियों
आज गणतंत्रदिवस के पावन अवसर पर मुझे गगनयान के बारे में बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है
देश उस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ चला है
2022 में हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं
और उस मौक़े पर हमें गगनयान मिशन के साथ एक भारतवासी को अन्तरिक्ष में ले जाने के अपने संकल्प को सिद्ध करना है
गगनयान मिशन 21वीं सदी में साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगा
नए भारत के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा
आपको पता ही होगा इस मिशन में एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री के लिए 4 उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है
ये चारों युवा भारतीय वायुसेना के पायलट हैं
ये होनहार युवा भारत के कौशल प्रतिभा क्षमता साहस और सपनों के प्रतीक हैं
हमारे चारों मित्र अगले कुछ ही दिनों में ट्रेनिंग के लिए रूस जाने वाले हैं
मुझे विश्वास है कि ये भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग का एक और सुनहरा अध्याय बनेगा
इन्हें एक साल से अधिक समय तक प्रशिक्षण दिया जायेगा
इसके बाद देश की आशाओं और आकांक्षाओं की उड़ान को अंतरिक्ष तक ले जाने का दारोमदार इन्हीं में से किसी एक पर होगा
आज गणतंत्र दिवस के शुभअवसर पर इन चारों युवाओं और इस मिशन से जुड़े भारत और रूस के वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों को मैं बधाई देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियों
पिछले मार्च में एक videoमीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ था
चर्चा यह थी कि कैसे एकसौ सात साल 107 की एक बुजुर्ग माँ राष्ट्रपतिभवन समारोह में प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति जी को आशीर्वाद देती है
यह महिला थी सालूमरदा थिमक्का जो कर्नाटक में वृक्ष माता के नाम से प्रख्यात हैं
और वो समारोह था पद्मपुरस्कार का
बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आने वाली थिमक्का के असाधारण योगदान को देश ने जाना समझा और सम्मान दिया था
उन्हें पद्मश्री सम्मान मिल रहा था
आज भारत अपनी इन महान विभूतियों को लेकर गर्व की अनुभूति करता है
जमीन से जुड़े लोगों को सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस करता है
हर वर्ष की भाँति कल शाम को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है
मेरा आग्रह है कि आप सब इन लोगों के बारे में ज़रूर पढें
इनके योगदान के बारे में परिवार में चर्चा करें
2020 के पद्मपुरस्कारों के लिए इस साल 46 हज़ार से अधिक नामांकन प्राप्त हुए हैं
ये संख्या 2014 के मुक़ाबले 20 गुना से भी अधिक है
यह आँकड़े जनजन के इस विश्वास को दर्शाते हैं कि पद्मअवार्ड अब peopleएस Awardबन चुका है
आज पद्म पुरस्कारों की सारी प्रक्रिया ओनलाइन है
पहले जो निर्णय सीमित लोगों के बीच होते थे वो आज पूरी तरह से पियोपलड्राइवन है
एक प्रकार से कहें तो पद्मपुरस्कारों को लेकर देश में एक नया विश्वास और सम्मान पैदा हुआ है
अब सम्मान पाने वालों में से कई लोग ऐसे होते हैं जो परिश्रम की पराकाष्ठा कर ज़मीन से उठे हैं
सीमित संसाधन की बाधाओं और अपने आसपास की घनघोर निराशा को तोड़कर आगे बढ़े हैं
दरअसल उनकी मजबूत इच्छाशक्ति सेवा की भावना और निस्वार्थभाव हम सभी को प्रेरित करता है
मैं एक बार फिर सभी पद्मपुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूँ
और आप सभी से उनके बारे में पढ़ने के लिए अधिक जानकारी जुटाने के लिए विशेष आग्रह करता हूँ
उनके जीवन की असाधारण कहानियाँ समाज को सही मायने में प्रेरित करेंगी
मेरे प्यारे देशवासियों
फिर एक बार गणतंत्रपर्व की अनेकअनेक शुभकामनाएँ
यह पूरा दशक आपके जीवन में भारत के जीवन में नए संकल्पों वाला बने नई सिद्धि वाला बने
और विश्व भारत से जो अपेक्षा करता है उस अपेक्षाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य भारत प्राप्त करके रहे
इसी एक विश्वास के साथ आइये नए दशक की शुरुआत करते हैं
नए संकल्पों के साथ माँ भारती के लिए जुट जाते हैं
बहुतबहुत धन्यवाद